सामने एक टेबल रखी हुई टेबल पर फूल रखे हुए सोफा रखा हुआ पिले कलर का फूल और स्नेकर रखे हुए दिखाई दे टेबल काले--

बड़े -बड़े व्रछ दिखाई दे रहे एक लम्बी बिल्डिंग दिखाई दे रही सफ़ेद कलर में पुती हुई तीन मंजिल है और इसमें एक लाल पट्टा दिखाई दे रहा है बगल में एक बिल्डिंग दिखाई लाल--

यह काले कलर मन का दिखाई दे रहा अगल -बगल गमले रखे हुए है गमलो में पौधे लगे -लगे हुए है लम्बी कतार में बड़े -बड़े नरियल के पेड़ दिखाई दे रहे है जो नीचे सफ़ेद और बीच में लाल और ऊपर काले कलर के दिखाई दे रहे हैं।

कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे है पिनचिंग दिखाई दे रही है कागज के टुकड़े दिखाई दे रहे माउस दिखाई दे रहा है और उसमें लाइट जल रही है ऊपर छत सफेद है और सबको आगे अपने -अपने काम में लगे--

गमले रखे हुए गमले लाल कलर के रखे हुए है उनमें ओ छोटे-छोटे पौधे भी लगे दिखाई दे रहे है ऊपर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही बहुत प्यारा सिन लग रहा है डेकोरेट है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और ये धान का खेत है धान लगी हुई फसल दिखाई दे रही हरी-हरी दिखाई दे--

नीचे बोहत चौड़ा हॉल है उसमे दोनों तरफ टेबलें कुर्सी जमी हुई कुछ आदमी बैठी हुई खाना खा रहे दिखाई दे रहे हैं।

सिन दिख रहा है यह सिन बहोत लंबे एक प्रतिमा दिख रही है काले कलर की प्रतिमा है इसकी ऊपर सिर पर टोप लगा हुआ दिखाई दे रहा कुछ डिज़ाइन बनी हुई दिखाई दे रहीं।

बहोत सारी कुर्सी हैं कुछ पेड़-पौधे लम्बे बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के कुछ प काले--

निचे गेट लगा हुआ हे काले रंग की ये काले रंग की रेलिंग लगी हुई हे और सफेद कलर पता हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा हैं अति प्यारा सीन हैं यह नीले रंग से इसके पूता हुआ हैं पट्टी और इसमें पीछे रेलिंग वाली लगी हुई हैं।

पार्क है गोल गोल गोल क्यारी बनी हुई है उसमे पौधे लगे हुए है इसके पास रेल का इंजन दिख रहा है उसमे रेल में तीन चार डिब्बे दिख रहे है लाल कलर की डिब्बा हैं।

एक सीन दिखायी दे रहा है ऐसा लग रहा है कपड़े की दुकान है कपड़े में टंगे हुए दिखायी दे रहे हैं लाल पीले हरे सफ़ेद रंग के कपड़े दिखायी दे रहे हैं।

-- दिखाई दे रही सफेद कलर की है और इसमें एक मैन गेट बना हुआ है ऊ मेन गेट नीले कलर और सफेद कलर में पोता हुआ है डेकोरेट है।

--पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पत्थर है इसके बगल में कुछ हरे पौधे लगे है कुछ सूखे पौधे झाडिया दिखाई दे रही खुला आसमान सामने दिखाई दे रहा है।

लाल पीले रंग की हरे रंग की है इस साइड एक लेडीस बैठी हुई है इस साइड एक आदमी खड़ा हुआ है कुछ लिख रहा है।